यहाँ पे इस दुकान में गरमागरम जलेबी छान के एक ट्रे में रखा गया है यह जलेबी खाने में बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी होती है।

यह एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय है इस विश्वविद्यालय छप्परा के हैं यह रोड साइड में है यहाँ पर काफी सारे लोग --

यह एक टोटो रिक्शा है इस टोटो रिक्शा में चार से पाँच आदमी तक टोटो रिक्शा में बैठते हैं यह टोटो रिक्शा --